इस दृश्य मे एक वॉल है जिसका रंग है क्रीम रंग का।

इस दृश्य में एक बहुत सुंदर दुकान नजर आ रहा है।

इस दृश्य में महिलाओं ने मोमबत्ती पकड़ी रखी है।

इस दुकान में एक पानी का जग रखा गया है।

इस दृश्य में तीन लोग हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं।

लोगों के पीछे एक चेयर भी रखी गई है।

इस लड़के ने एक टीशर्ट और पैंट पहना रखा है।

दृश्य मे बहुत सारे खूबसूरत बैलून भी नजर आ रही है।

इस दृश्य में बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लोगों ने इनमें से अपने मुंह में मास्क पहना रखा है।

इस दृश्य में बहुत सारे इंडियन फ्लैग भी दिखाई दे रहे हैं।

दृश्य में एक चाय का दुकान नजर आ रहा है।

इस दुकान में बहुत सारी बर्तनें रखी गई हैं।

इस गौशाले में कुछ गाये खड़ी हुई और बैठी हुई नजर आ रही है।

इस दृश्य में बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में एक साइन बोर्ड भी नजर आ रहा है।

इस सरक का रंग है सिल्वर रंग का--

इस दृश्य में एक ब्रिज नजर आ रहा है।

इस स्विमिंग पूल के पास बहुत सुंदर बॉर्डर बनाए गए हैं।

इस दृश्य में एक बहुत सुंदर बोटैनिकल गार्डन दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में एक खुला मैदान जो हरे रंग का है। वो भी नजर आ रहा है

इस दृश्य में एक घर दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में एक घना जंगल पीछे दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में एक बस भी नजर आ रहा है।